दुकान हे साड़ी दुकान हे और पीला और सफेद में का का लिखे हे टेबल हे कार हे लाइट हे।

टेंट हे बड़े घर हे दीवार हे अऊ कचरा डब्बा हे आदमी रेंगत हे अउ पेड़ हे पौधा हे पत्ता हे बादल हे।